एक बस स्‍टॉप्‌ बना हुआ है जो बस स्टॉप में एक बस खड़ी हुई है।

कुछ लोग बसों में ये चढ़ रहे खड़े हैं और कुछ लोग ऊपर ऊपर चढ़ हुए हैं बसों में और कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। कार ख --

यह चर्च है जो चर्च के बाहर झंडे हैं जो झंडा फेहरा रहा है और एक दो सीढ़ियों के पास खड़े हैं। कुछ नीचे ए खड़े हुए हैं और बगल में एक हरा पेड़ है।

एक बहोत बड़े चट्टानें बनी हुई है जो एक लड़का चट्टान को पकड़-पकड़ने की कोशिश कर रहा है और कुछ चट्टाने नीचे भी हैं।

एक चट्टान एक बड़ा सा चट्टाने हैं जो चट्टानों मे कुछ गुफा भी बनी हुई है जो औरत एक गुफा मे घुस रही है और कुछ लड़के और कुछ लड़के बैठे हुए हैं।

एक स्टेज है जो स्टेज बना हुआ है। सीढ़ियां बनी हुई हैं जो गुब्बारों और गुब्बारों से सजा हुआ है। एक औरत मैदान में खड़ी हुई है और गमले रखे हुए हैं।